यहां पे एक शॉप है और एक मुस्लिम आदमी एक शॉप में खड़ा है और बहुत सारे लोग उसके पास आकर --

ये एक जिम है और ये जिम बहोत सुंदर है और यहाँ पे येलो कलर का और पिंक कलर का आउट लाइनिंग दिया हुआ है दीवार का।

औजार है और एक बोर्ड लगा है और यहाँ पर बहुत सारा अलग-अलग तरह के इक्विपमेंट हैं जो जिम के लिए यूज होते हैं और यहाँ पर लोग आकर जिम करते हैं।

यहां पे एक बंदा अपना बॉडी दिखा रहा है और उसने अपना बनियान ऊपर किया हुआ है उसने जींस पहना है और उसके पीछे एक बंदा है।

यहाँ पे एक बंदा चाय पी रहा है जि जिसके ऊपर कुछ लिखा है और उसने वाइट कलर का शर्ट पहना है और इसके साइड में एक और कप है जिससे कोई चाय पी रहा है।

ये एक स्कूल है या फिर कॉलेज है जिसके ऊपर सेंट जोसेफ स्कूल लिखा हुआ है और ये ऊपर एक चर्च का साइन बनाया है।

ये एक एच.डी.एफ.सी. का बैंक है और पीछे ग्रीन कलर का बिल्डिंग है और नीचे बहुत सारी भीड़ है और स्कूटी है और बाइक्स और सामने आदमी चल रहे है।

जो की टी.वी.एस. की है और पीछे एक दीवार है उसके पीछे कुछ लिखा हुआ है करके सामने एक रोड है उसके पीछे एक साइकल है।

और किसी ने यहाँ पे फोटो बाहर से लिया हुआ है और एक यहाँ पे धुंध है थोड़ा सा और ग्राउंड पूरा क्लीन है।

बिल्डिंग और जंगल छे और नदी के साइड में एक पेड़ है और उस साइड में एक मकान है और बीच में पेड़ है।

ये एक प्रोग्राम हो रहा है जहां पे तीन लोग हैं एक आदमी है दो औरते हैं जो कि दो साड़ी में है और एक रिलिजिय्स पहन कर बैठे हैं और वो ढोलक और तबला बजा रहे हैं।

ये एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं भीड़ में और यहाँ पर एक कार है जिसका दोनो दरवाजा खुला हुआ है और उस साइड दो रोड है।

ये एक आलीशान मेहेल जैसा है और यहाँ पर एक सीढ़ी है जो की दो साइड से खुलती है और पर वहाँ एक दूसरे सीढ़ी से दो लोग आ रहें हैं और नीचे के सीढ़ी में एक-दो लोग हैं।

ये एक क्रिश्चन का वो है जहाँ पे क्रिश्चन का आदमी खड़ा है। इसके गले में माला है और उसके साइड में दो लोग बैठे हैं एक आंटी है और एक अंकल हैं।

मोन्यूमेंट्री को देख रही हैं अम जहाँ जिसके अंदर जीसस है और वो लोग एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं और सब लोग चर्च की तरफ ध्यान है उनका।

यहाँ पे बहोत लोग साड़ी पहन के आए हैं जो की सफेद कलर का है और वो लोग भगवान का पूजा कर रहे हैं और वो लोग दिया जला रहे हैं।

और यहाँ पर पुरा पानी हैं जो की बोहोत सुंदर दिख रहा है और पुरा ब्लू कलर का है और ऊपर अ आसमान बोहोत नीला है। ये पानी भी बोहोत नीला है बच्चे खेल रहे हैं |

है और यहां पे एक पोस्ट बैंक इंडिया पेमेंट्स बैंक है और ये बिल्डिंग बहुत पुराने और अच्छे है।

और इसमें कान्हा जी हाथ में बांसुरी पकड़ के बजा रहे हैं और जो कि बहुत सुंदर लग रही है और उसके साइड में ही एक पेपर का टुकड़ा है।